यह एक स्विमिंग फूल है इसमे बहुत बड़ा एक दगड़ है उसके बाजुमे एक पड़े है आस पास बहुत सारे पेड़ पौधे है।

रहे है। उपर बहोत सारी लाईटे लगी हुई है। यहा वहा बहोत सारे खंबे लगे हुए है।

सामने एक गोल चकरी जैसा खिलौना है उस चकरी जैसे खिलौना मे बहुत सारे लोग बैठे हुए है वह ऊपर की तरफ जा रहे--

कुछ लोग उस खिलौने मे बैठे हुए है। पास मे कुछ ऑफिस है उसके अंदर बोर्ड लगा हुआ है। आजू-बाजू मे बहुत सारे पेड़-पौधे भी है।

सामने एक बडा सा टब है। उस टब मे बहुत छोटी छोटी बॉल है। वह बहुत कलर कलर की है।

सामने जहाज है। उस जहाज मे बहुत सारे लोग है। यह एक समुद्र है। इस समुद्र का पानी काला है। समुद्र के अंदर एक--

यह एक समुद्र है समुद्रमे बहुत बड़ी बड़ी जहाजे है यहा पर तीन जहाज है। एक जहाज मे--

उसपर कुच्छ व्हाइट कलर का लगा हुआ है आसपास बहुत सारे पेड़ है एक दूर की तरफ एक टावर है अजूबाजुमे बहुत सारे पेड़ पौधे है उपर आसमान है।

सामने एक डेअरी है। उस डेअरी के उपर एक बोर्ड भी लगा हुआ है। उसपर नाम लिखा है।